ये यहा पर काफी सारे पत्थर है और उन्ही पत्थर के ऊपर एक लड़क खड़ा हुआ है जिसने ब्लॅक कलर का शॉर्ट और एक स्काइ ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

यह एक नदी है। नदी के एक तरफ काफी सारे पेड़ है और दूसरी तरफ कुछ पत्थर पड़े हुए है।

बीच में बैठा हुआ है जिसने लाल कलर का अंगोछा पहना हुआ है पीछे एक दीवार है जिस पर व्हाइट पेंट हुआ है दीवार के साइड में एक गोल्डन कलर का घंटा भी है घंटे के नीचे कुछ खिड़कियां है।

यहा सड़क पर एक आदमी व्हाइट कलर के कपड़े पहन कर एक ब्लाक कलर की सायकल चला रहा है जिसकी व्हाइट कलर की एक दाड़ी भी है वही पीछे की तरफ यहा एक लाल कलर की बिल्डिंग भी दिखाई दे रहि है।

यह एक बिल्डिंग है जिसपर व्हाइट कलर का पैंट हुआ हुआ है जिसके छत पर एक प्लस का निशान है और यहा बिल्डिंग मे पिंक कलर की लाइटनिंग हुई--

जिसके साइक मे वोडाफ़ोन ये भी लिखा हुआ है और ऊपर एक लाल रंग का पोस्टर है जिसपे सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है एयरटेल फोर जी।

ठीक उसी के आगे एक वॉचमेन भी खड़े हुए है और काफी सारे लोग यहाँ दिखाई दे रहे है।